एंड नीचे में कुछ औ घास लगी हुई है कुछ स्थानों पे घास नहीं भी लगी हुई है।

बाहर से रौशनी अंदर आते हुई है साफ दिखाई दे रही है सामने एक बहोत बड़ा -सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

और इसके हाथ में एक गाड़ी का तेल भरने वाला कुछ यंत्र भी दिखा जा रहा है और ये गाड़ी का बोनट खुला हुआ देखा जा सकता है।

और पानी इ पानी के आस -पास में कुछ खेती भी देखी जा सकती है और कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

और लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगा है कुछ स्पीकर भी लगे हुए है।